बहोत सारे बांस खोसे हुए हैं।

चट्टानों के बीच से गुजर कर आई हुई पानी की झरने दिख रहे हैं।

पोस्टर के ऊपर शालीमार नर्सरी सभी प्रकार के पौधों एवं ठोक एवं खुदरा मिलता है लिखा हुआ है।

पीछे एक शोपीस वाली मूर्ति दिखाई दे रही है।

लगे हुए है झूमर लगी हुई है।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

बहुत सारे स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं।

ऑटो का कलर मोस्टली ग्रीन एंड येलो है।

पोल पे लाइट लगी हुई है।

स्टेज के ऊपर एक पोस्टर लगी हुई है जिस पे फ्रेशर्स लिखी हुई है।

एक बच्चों का मिकी माउस बना हुआ है।

इस चित्र में एक रेस्टोरेंट की तस्वीर दिखाई गई है।

इस चित्र में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

पानी की पाइप दिख रही है।

एक डिश की एंटिना नजर आ रही है।

जैसे बैगन कन कद्दू धनिया पत्ती मिर्चा टमाटर और भी बहुत सी सब्जी एक आइस क्रीम की ठेला दिखाई दे रही है।

इसके हाथ में थैला है।

बहुत से व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में एक पार्क की तस्वीर दिखाई गई है।

टेबल के ऊपर टिशु रखे हुए हैं ग्लास रखी हुई है।

बहोत सारे पाये बने हुए हैं अल्वेस्टर की छत है।

जिस झोपड़ी में सर्थक फाउंडेशन लिखकर एक बैनर लगी हुई है।

बहोत सारी महिलाएं योगा करती हुई दिखाई दे रही है।

गोदाम के अंदर बहौत सारे बोरे रखे हुए दिखाई दे रहे है।

एक लाल कलर के कपड़े बिछाकर उस पे बहुत सारी अलग अलग तरह की मछलियां रखी हुई है।